मुझे यहां पर एक बड़ी सी शॉप दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर नीचे लाल पट्टी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक बड़ी सी शॉप दिखाई दे रही है।

पास ही में एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है।

सामने की ओर एक कांच लगा हुआ दिख रहा है।

बोर्ड पर भोजन पार्सल सुविधा उपलब्ध है लिखा है।